ये पानी गिरता हुआ एक झरना है जिसके आजू-बाजू में भूरा दिखाई दे रहा है कुछ ग्रीन कलर के पेड़ हैं पानी में ऊपर से नीचे गिरते हुए --

ये एक धर्मशाला है जिसमें वाईट कलर पुता हुआ है उसके सामने बहोत सारी कार खड़ी हुईं हैं पेड़ पौधे लगे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और एक झंडा लगा हुआ है बाजु में भी एक बिल्डिंग है पीछे पहाड़ है जो ग्रीन है और थोड़े हल्के फुल्के --

ये एक बस स्टॉप है जहाँ बस खड़ी हुई है लोगों को रुकने के लिए म-म-म तिन शेड बनाया हुआ है बाजु में एक-क-क इमारत --

में वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहै हैं ऊपर आसमान हल्का नीला पर्पल कुछ दिखाई दे रहा है बात जल भी नीला-सा दिखाई दे रहा--

ये एक समुद्री यहाँ एक समुद्र है आसमान व्हाइट पर्पल हो रहा है ग्रीन कलर के पेड़ हैं ग्रीन कलर --

जो भूसा निकाल रही है और बहोत सारी उम्म आदमी खड़े हुए है यहाँ बोरीयां रखी हुई है अनाज रखा हुआ है भूसा रखा हुआ है ग्रीन कलर के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अनाज भी रखा हुआ है